वैसे भी बैठी हुई है | एक वैरागी एक बिछा रखा है लेकिन कोई सा दिखाई नहीं दे रहा है।

यहाँ पर ये दुकान है। दुकान में मैगी के पैकेट भी रखे हैं बिस्कुट के पैकेट भी रखे हैं पेन भी रखे हैं और सामान बहोत सारे रखा है लेकिन दुकान में कोई दिखाई नहीं दे रहा है।

मेज लगा रखा है मेज में सफ़ेद और सफ़ेद पैलेट है। उसमे लाल और नीले रंग की धारें है उसमे रोटियां रखी है तीन चार परांठे रखे हैं।